सामने एक हरे कलर की कुछ चीज भी दिख रही है।

सामने पेड़ भी दिख रहा है।

इस चित्र में एक ट्रक दिख रही है।

और सामने एक फेविकोल का डब्बा भी दिख रहा है।

को एक आदमी गुफा के अंदर खड़ा है।

ब्लू कलर की श टी_शर्ट पेहनी हुई है।

इस चित्र में कई लड़के बैठे हुए हैं।

आसपास पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

सफेद कलर की कपड़े पेहने हुएं हैं।

जैसे पुराना ड्रम और लकड़ी के कुछ पुराने सामान--

एक कारपेट भी बिछा हुआ है।

बंगलो बोहोत सुंदर लग रहा है।

हमें दिख रहा है यह दुकान एक प्लास्टिक की चीजों की हैं।